जैसा की मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ --

ये किसी भगवान की फोटो है।

और इस मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद मोहमद --

और इस फोटो में मूर्ति लगी हुई है भगवान शिव की और वो तांडव कर रहे है।